इस फोटो में दो पंखे नजर आ रहे है।

के पास मे एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है।

गोदाम घर में बहोत सारी चीज रखा हुआ है।

घर की फ्रेंट में एक ब्लू कलर का गेट लगा हुआ है।

एक सीढ़ी दिखाई दे रहा हैं।

छोटे छोटे पेड़ रखा हुआ है।

हरे पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

घर में बहुत सारी सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में एक आदमी--

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

एक पत्थर नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के पास बहुत सारे लोग--

दुकान के बोर्ड में फूड ट्रक लिखा हुआ है।

आकाश बहुत निर्मल दिखाई दे रहा है।

तार जेली का बाढ़ बना हुआ हैं।

घर के पास में बहोत सारी गाड़ी खड़े हुए हैं।

टीन का कलर ग्रीन कलर है।

ग्रीन कलर का एक छत दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बैंक दिखाई दे रहा है।

एक रोड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

घर के ऊपर टीन का छप्पर पड़ा हुआ है।

फोटो में एक जिम का चित्र नजर आ रहा है।

एक बच्चा ब्लैक कलर का ड्रेस पेहना हुआ है।

होटल में बहोत सारे लोग खाना खा रहे हैं।

इस फोटो में बुद्ध देव का मूर्ति नजर आ रहा है।

चर्च बहुत सुंदर सजा हुआ है।

दो बच्चे खड़े हुए हैं दो फादर --

एक ब्लैक कलर का चेयर पड़ा हुआ है।

एक इंडियन ऑफिस का चित्र नजर आ रहा है।

दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहा हैं।

रस्ते के साइड में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहा है।